यह एक दुकान है दुकान पे एक आदमी है वह आदमी के हाथ में एक ठु पेन है प्लास्ट--

रास्ता दिखाई जा रहा है। रास्ता में पानी दिखाया जा रहा है। पाचिल दिखाया जा रहा है। अगल बगल पाचिल देके घर बना हुआ दिखाई जा रहा है। बोहोत सारा दूर दूर से घास दिखाई जा रहा है।

ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का बगल में एक बड़ा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के नीचे सब आदमी खड़ा है गेट दिखाया जा रहा है टेबल दिखाया जा रहा है।

पानी है इधर फिर पेड़ का घास दिखाई जा रहा है। लाल मिट्टी दिखाई जा रहा है। बहोत सारा घर दिखाई जा रहा है छोटा-छोटा पूरा घर दिखाई जा रहा है। इधर से --